इस रंगोली के द्वारा लोगों की रूचि को अ रूचि को पहचाना जा सकता है व टैलेंट को इस-इस रंगोली से लोगों की खुशियाँ में प्रयोग होती है। यह --